जहां पर बहोत सारी खिड़कियां लगी दिख रही है।

सामने बहोत सारी मोटर बाइक्स खड़ी दिख रही है।

दूसरे व्यक्तियों से बात करता हुआ नजर आ रहा है।

सामने बहुत सारे हरे भरे पेड़ नज़र आ रहे हैं।

इस चित्र में दो तोते नजर आ रहे हैं जोकि दूसरी प्रजाति के लग रहे हैं सामने--

इस चित्र में कुछ चार पांच व्यक्ति स्टेट बैंक ए_टी_एम के बाहर इंतजार करते दिख रहे हैं।

बहोत सारी लकड़ी की चेयर्स और लड़की के टेबल रखे हुए दिख रहे हैं।

रूम्स की दूसरी तरफ एक बड़ासा काले रंग का सोफा और--

कुछ ड्रम्स भी और बाक्सेज नजर आ रहे हैं।

कुछ मीठे आलू भी दिख रहे हैं।

सामने एक बड़ी सी पत्थर की दीवार दिख रही है।

इस चित्र में बहोत सारे लोग बरफ में बरफ का लुप्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग बर्फ में स्केटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।

बहोत सारी कुर्सियां और टेबल्स रखे गए हैं सामने कुछ सोफाज हैं।

इस चित्र में सामने एक मैकेनिक की दुकान नजर आ रही है।

तीन सरदार दिख रहे हैं। दुकान के सामने दो बुलेट खड़ी हुई दिख रही हैं।

इस चित्र में एक छोटा सा पार्क नज़र आ रहा है जिसमें एक पीले रंग का झूला लगा हुआ है।